भाविका मेडिकल हॉल यहां पे मेडिकल हॉल मे बहोत सारे।

बगीचे के अंदर आस पास हरियाली दिखाई दे रही है।